ये एक गार्डन की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां मॉल मे हर बिल्डिंग पर बहोत सारे लोग खडे हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर पेड़ों के ऊपर भी लाइटें लगाकर डेकोरेशन किया हुआ नजर आ रहा है।

जहां पर एक फटे हुए पोस्टर को दो आदमी सही करते हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पर बहोत सारे बड़े बड़े अशोक के पेड़--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

ये किसी जगह की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर मुड्डे वाली लड़ --

और बहोत सारी अलग अलग प्रेस रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक आदमी भी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

ये एक स्विमिंग पूल की तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे आदमी --

और कुछ कपड़े के प्रिंटेड वाले सोफे भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ये किसी मैदान की तस्वीर दिखाई दे रही है।